ये ऊहा पे बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं एवं कपरे देख रहे हैं।

और वहां पर बहोत सारे बकरियां भी देखने को मिल रही है उजले काले एवं भूरे रंग की।

पर बहुत सारे छोटे छोटे गमले भी देखने को मिल रहे हैं।

एवं वहां पे छोटे छोटे होल्डर भी देखने को मिल रहे हैं।

सामने एक टिकट काउंटर देखने को मिल रही है।

और उसके ऊपर एक भगवान का मंडप बनाया गया है और उसमें भगवान जी हैं एवं वहां पे बहोत सारे बिस्किट भी देखने को नजर आ रही हैं।

जोकि दोनो साइड से बहोत सारे रॉड एवम् तारे निकली गई है एवम् वहां पर आसमान भी देखने को मिल रही है।

और वहां पे छोटे छोटे टब भी रखे गए हैं और वहां पे तीन चार रंग--